प रखा है चॉकलेट भी रखी है। बहोत सारी बच्चों की चीज खाने के लिए रखी हैं और शटर गिर रखे हैं। यहाँ पे शटर बंद पड़े।

यहाँ गाड़ी रखने की पार्किंग है। ऊपर से छत है। पाइप लगा है। पंखे बंद हो रखे है। बोहोत सारे गाड़िया है। गाड़िया खड़ी हो रखी हैं और आदमी कोई नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल शांत पड़ा है।

पाइप चल रहा है | इधर से बेग भी लगा रखा है चोटी कड़ाई भी बिक रही है लेकिन आदमी कोई नहीं दिखाई दे रहें|